यहां पर देखिएगा इस इमेज मे बड़ा सा मैदान दिखाई दे रहा है और सामने कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे है।

यहां पर देखियेगा इस इमेज मे एक बड़ा सा खेत दिखाई दे रहा है जहां पर ये हरे हरे पेड़ नज़र आ रहे है।

इस इमेज में देखिएगा एक दुकान दिखाई दे रही है यहां पर वो सामने बहुत सारे पैकेट टंगे हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है जो आधा खुला हुआ है और ऊपर की तरफ नाम भी लिखा हुआ है।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

इस इमेज में देखिएगा सामने एक बस दिखाई दे रही है जिसके ऊपर वातानुकूलित लिखा नजर आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर देखिएगा एक हॉल दिखाई दे रहा है जहां पर टेबल और सोफा नजर आ रहा है सामने बड़ा सा पर्दा भी लगा है।

इस इमेज में देखीयेगा यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं और बीच में दो लड़के नजर आ रहे है।

इस इमेज मे देखियेगा यहां पर सामने एक ई रिक्शा दिखाई दे रहा है और उसके पीछे पेट्रोल पंप नज़र आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर सामने दो बस खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं और एक लड़का भी नजर आ रहा हैं जिसने पीछे बैग टांगा हुआ हैं।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर सामने एक सब्जी मार्केट दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ लोगों की भीड़ नजर आ रही है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर सामने एक मैदान दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ बुजुर्ग लोग बैठकर बातें करते दिखाई दे रहें हैं।

इस इमेज में देखिएगा यहां पे सामने एक व्यक्ति हाथ जोड़े खड़ा है दुकान के अंदर भगवान की तस्वीरें --

इसके इमेज में देखियेगा यहां पर दुकान दिखाई दे रही है जिसका शटर बंद है और उपर पतंजलि का बोर्ड भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर साइ बाबा का मंदिर दिखाई दे रहा है और पुजारी पूजा करता हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक बड़ा सा कमरा दिखाई दे रहा है जिसमें ऑफिस बना हुआ नजर आ रहा है।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

इस इमेज में देखिएगा यहां पर सामने एक किला दिखाई दे रहा है और कुछ कारे लाइन से खड़ी हुई नीचे नजर आ रही है।

इस इमेज मे देखिएगा यहां पर सामने एक दूल्हा खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और पीछे फूलों से बने दो दिल नज़र आ रहे है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर सामने बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है और बड़ा सा गेट भी नज़र आ रहा है।

इस इमेज में देखियेगा यहां पर सामने एक कार दिखाई दे रही है जिसकी डिग्गी खुली हुई नजर आ रही है।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

इस इमेज में यहां पर देखिएगा एक दुकान दिखाई दे रही है जिसपे बड़े बड़े बैनर्स टंगे हुए हैं और राजा लिखा हुआ है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर सामने एक फूल का झाड़ दिखाई दे रहा है और नीचे दो ब्लू कलर के टंकी भी नजर आ रही है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर किला दिखाई दे रहा है और कुछ लोग भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं।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

इस इमेज में देखिएगा एक होटल दिखाई दे रहा है और यहां पर स्विमिंग का बोर्ड भी लगा हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखियेगा यहां पर दवाइयों की दुकान दिखाई दे रही है जहां पर देखियेगा बहुत सारी बोटले नजर आ रही है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर सामने कार खड़ी हुई है और सामने बिरला मंदिर दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में देखिएगा यहाँ पर एक मैदान दिखाई दे रहा है जहाँ पर कुछ पेड़ और पहाड़ भी नजर आ रहे हैं।

यहां पर सामने एक क्लीनिक दिखाई दे रहा है जहां पर टेबल पर कपड़ा पड़ा हुआ है और दो तीन लोग नजर आ रहे है।

यहां पर सामने एक बड़ा सा गेट नजर आ रहा है और सड़क पर ऑटो रिक्शा भी दिखाई दे रहा है।